में एक ऑफिस का दृश्य है जिसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है ऑफिस की छत पर गुब्बारे लगे हुए हैं।

जिसके चारो तरफ फूल लगे हुए हैं नीचे की तरफ एक हरे रंग का कारपेट भी बिछा हुआ है।